सामने दो बेड दिख रहे हैं जो चॉकलेटी कलर के हैं जिनके ऊपर गद्दा सफेद और--

सामने बड़ा गोदाम दिख रहा है जिसमें बड़े मोटे--

स्वेटर पहने हुए हैं और चश्मा लगाए हुए हैं पीछे एक कुर्सी दिख रही है और--

स्नेक बार हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है और--

सामने एक आदमी बैठा हुआ है और एक खड़ा हुआ है ऊपर छत सफेद कलर की है बहुत सारी लाइट --

सामने एक टेबल बनी है जो कत्थई कलर की हैं और ऊपर कांच लगा हुआ है ऊपर एक कंप्यूटर रखा हुआ हैं और सामने--

नीचे सफेद कलर की टेबल बनी है।

सामने एक महिला बैठी हुई है जिसके हाथ मे कप है और--

सामने बहुत सारी बच्चियां दिखाई दे रही हैंऔर सामने दूर एक बिल्डिंग दिख रही है जो सभी--

नीले कलर का मग और कुछ पौधे रखे हुए हैं और लड़की के हाथ में एक छोटा पौधा है साइड में एक लड़--

खिड़की बनी हुई है और पीछे बड़ा ऊंचा खंबा दिख रहा है जो सफेद--

नीले कलर की ग्राउंड दिख रहा है और दूर बहुत सारा ऊंचा पहाड़ है जिसमें बहुत से पेड़े दिख रहे हैं।

गोल गोल लवर गोल गोल चके जैसे टास लगे हैं इनमें हरी घा।

सामने एक बड़ा लोहे का सफेद कलर का गेट लगा है जिस पर एक सफेद बोर्ड लगा हुआ है जिसमें काले कलर से टुगेदर --

नीले कलर की है साइड में एक और सफेद गेट ।

और एक कथाई बिल्डिंग दिख रही है और बहुत सारे पेड़ हैं।

पहनाये होप्स संस लिखा हुआ हैचौबीस कैरट गोल्ड ।

लिखा है और साइड में एक सीसी रखी है जिसमें गोल्ड प्लस .

ऊपर कुछ डमरू लगे हुए हैं। लंबी ट्यूबलाइट लगी हुई है। चौड़ी पट्टी और बहोत सारी डोरी--

सामने एक अह दुकान दिख रही है जिसमें ऊपर काला कलर है जिसके ऊपर--